बहुत अच्छा मकान बना हुआ दिखाई दे रहा है जहाँ पर लिखा है उप डाकघर बाकी गोंगरा। यहाँ पर देखा जाए बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है जहाँ पर--

दरवाजे लगाए गए है जहाँ पर बिल्डिंग का कलर लाल ]

कार्यालय अनुसंधान दक्षिणी अधिकारी ककोरा जिला कोरबा यहां पर देखा जाए ये हरियाली दिखाई दे रही है यहां पर कुछ अच्छे पेड़ पौधे दिखाई दे--

जहां पर पानी हरा दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत से बादल अच्छे तरह से नजर आते हुए दिखाई दे रहे है।

कुछ अच्छी गाड़ियां बनी हुई दिखाई दे रही है जहां पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है वह पर लिखा है आई_एन_डी_आई_ऐ_एन --

यहां पे देखा जाए तों अच्छी तरह से सजावट हुई है यहां पर बोहोत अच्छे बादल दिखाई दे रहे है यहां पर देखा जाए कुछ अच्छे चबूतरे बने हुए दिखाई दे रहे है।